बाहर में लड़का लड़की और बहुत सारे मर्द भी खड़े हैं आसपास का क्षेत्र में--

यह एक दुकान है जिसमे बहुत सारी कुर्सियां और टेबल बेची जा रही हैं।

यह एक बहोत ही सुंदर घर है जोकि आसपास का क्षेत्र बहोत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक व्यक्ति को दिखाया गया है इसके पीछे जिम का एक दृश्य है।

मंदिर के बगल में एक पोस्टर लगा है जिसमे लिखा है धम्म सम्मेलन--

इस फोटो में दो से अधिक व्यक्ति को दिखाया गया है।

यह एक हार्डवेयर का दुकान है जिसमे तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं।

इसमें एक दीवार में बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग व्हाइट कलर से पेंट की हुई है। आस पास का क्षेत्र बहुत ही साफ सुथरा है।

यह एक जंगल का भाग है जिसमें तहत तरह के पेड़ पौधे को दिखाया गया है।

इसमें बहुत सारे बांस के रैक बनाया गया है जिसके ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ और नीचे उतर सकता है।

बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक बाइक खड़ी है जो कि ब्लैक कलर की है।

फोटो में दो व्यक्ति को दिखाया गया है जो की शर्ट और जींस पहना हुआ--